जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि यह दिन का समय है ।

जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि काफी सारे बल्ब यहां पर।

कुछ सामान रखा हुआ है कुछ बोरियों का रंग सफे ।

सफेद कलर से लाइटिंग से चमक रहा है और एक सफेद कलर की गाड़ी भी खड़ी हुई है ।

हेयर बोटल रुपीज ट्वेंटी ईच ।

कुछ मछलियां छोटे साइज की हैं जो मछलियां छोटे साइज की।

सफ़ेद रंग का है एवं आसमान में धूप खिली हुई है।

दो झंडे लगे हुए है और झंडों के नीचे एक बोर्ड है जिसमे लिखा हुआ है नैशनल --

चद्दर के ऊपर रखा हुआ है उसने गुलाबी कलर की शर्ट पहन।

शर्ट पहनी हुई है एवं उसके बगल में तराजू रखा हुआ है।

ये आदमी खड़ा हुआ है जिसने यलो कलर की टी-शर्ट पहनी है।

जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि यह दिन का समय है।

और एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमे ऐस_बी_आई लिखा हुआ है।